और एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति पेंसिल रूल अपने हाथों में लिए हुए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक के कॉलेज जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।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

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है और उसके बाहर लाल कलर की एक --

और एक लड़की भी बैठी हुई दिखाई दे रही है।

ड्रम भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बाल्टी रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

गार्डन में बकरी का बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर वाइट कलर का है।

शॉप दिखाई दे रही है जिसमें कई सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही एक बड़ा फ्रिज भी रखा हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।